ये एक कॉलेज है। जिसमें ग्यारह खिड़कियां हैं और --

यह एक गार्डन है गार्डन में बहुत सारी लाइटें लगी हुई --

वहीं से एक लड़का आ रहा है और उसी के जस्ट साइड में स्कूटर रखी हुई है।

उसी के बाजु में एक दरवाजा है और दीवालों में कुछ तस्वीरें बनी हुई है।

इसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बहुत अच्छा खुला आसमान है।

और उसके अंदर कुर्सी उसके जस्ट साइड में काउंटर एरिया है।

जिनने ब्लू कलर की शर्ट और ग्रे कलर की पैंट पहेनी हुई है कुछ बच्चों ने नीले कलर रंग के --

ये एक दुकान है जिसमें पर्स और लड़कों के जूते और लड़कियों की चप्पल मिलते हैं जिसमें फिफ्टी परसेंट ऑफ है।

और उसे इंसान के कपड़ों का कलर ब्लैक है और दो लड़के हैं जिसेने व्हाइट कलर कपड़े पहने--

एक फ्रिज है रेड कलर का उधरी कुछ दवाई रखी हुई है।

इधर एक दरवाजा है और दो डस्टबिन है।

इसमें एक हॉस्पिटल है जिसका नाम एंजेल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है इसके बाजु में एक सफेद रंग की कार है।

ये एक बुक स्टोर जिसमें बहोत सारी बुके रखी हुई है।

पीले रंग के लाल रंग के हरा रंग का सफेद रंग का और कुछ रंग मिक्स होके रखे हुए है।

उसी के जस्ट बाजू में ब्लू कलर का एक समान रखने वाला चीजे है।

यह एक बंगला है जिसका कलर व्हाइट और ग्रीन है।

ये एक होटल है जिसके बाहर तीन बाइक खड़े हुए है।

और उस पानी जिसमें से पानी बह रहा है पानी के जस्ट बाजू में एक स्टूल है।

ये सीढ़ी के दूसरे तरफ भी एक छोटी सी चट्टान है जिसके ऊपर भी झाड़ उगे हुए है।

नदी के इस तरफ एक चट्टान है उसके ऊपर बहोत हरियाली हुई है।

और यहां पे बहोत सारे पेड़ है पानी का रंग भूरा है।

और एक फुटबॉल नेट है जिसके पीछे बहोत सारे बैगे पड़े हैं और जूते और सामने ही एक इमारत है।

और उसी के जस्ट पीछे वहां पे बहोत सारी पेड़े हैं।

इसमें एक रास्ता है जहाँ कुछ पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पे बहोत सारे पेड़ भीं हैं।

उपर तार दिख रही है और एक तार का पोल भी है।

और यहां पे एक इंसान अपनी भैसे ले के जा रहा है।

और बहोत सारे पेड़ पौधे है और दीवाल है।

खंभा है इधर और पीछे किसी का घर --

इसमें काम चल रहा है पटरी बनने का --

बहोत सारी पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और उधर ही दो लड़के है जो कंपनी में जा रहे हैं।

इसके दूसरे तरफ कुछ गेट बना हुआ है।

इस पे प्लास्टर का काम चल रहा है जिसमें बहोत सारी लकड़ी रखी हुई है।

ये एक बड़ा सा मंदिर है उसमें तीन दरवाजे है।

के बाजू में एक बैठक है उसमें एक लड़का बैठा हुआ है।

ये एक चाय की दुकान है चाय की दुकान में चाय बिस्कुट भी रखे हुए हैं और तीन बोटल है।

और उसके ऊपर ही एक घर है जिसमें दो खिड़किया है और नीचे भी दो खिड़कियां हैं।

उसके जस्ट आगे कचड़े उठाने वाली गाड़ी है।

इधर ही एक दुकान वाला बैठा है और जस्ट उसके बाजू में जूस के केन रखे हुए हैं।

उसके उधर दो पंखे है और एक फोटो है भगवान का --

काउंटर एरिया में चार चेयर रखी हुई है।

वहीं पर एक इंसान है जो कुर्ता पहन के जा रहा है।

साफ़ पानी बेह रहा है झरने के पीछे दीवाल है।

ये एक शेर है जो किसी को देख रहा है वो पिंजरे में है।

इसी के पीछे बोहोत सारे घास है।

तीन इंसान ब्लैक ब्लू और स्किन कलर के कपड़े पहने हुए --

ये एक होटल है वहीं पर टेबल और कुर्सी रखी हुई हैं।

वहीं पे बहुत सारे जन खाने आए है और उसमें एक वेटर है जिसने येलो कलर की टी_शर्ट पहनी हुई है।